और कुछ कलर्स है व्हाइट कलर की पेंट हुई ऊपर में--

गुलाबी कलर के फूल हैं कुछ छोटे छोटे गमले नजर आ रहे हैं।

दो खंभे है आसमान सफेद है एक पेड़ है एक ट्रक रखाई हुई हैं।

और दो साइड में खिड़कियां नजर आ री है।

विज्ञान लेजर लैन लेक्वर लिखाया है।

चक्के लगाए है इसमें पीला कलर का ट्रैक्टर का वो बना है।

सारी चीजे दिख रही है सफेद आसमान है।

शाम हो रही है बड़े बडे पेड़ हैं।

सामने में एक मैडम है जो कि सीखा रही है सबको--

जहाँ पे दो गार्ड है एक कार खड़ी है एक और कार जो बाहर खड़ी है बड़ी सी बिल्डिंग है असमान सफेद है।

कॉफी हाउस है कुछ आइसक्रीम रखा है कुछ काफी है।

डस्टबिन है बाहर में पेड़ नजर आ रहे हैं।